नीचे कुछ लाइट लगी हुई है।

स्टेज पर दो लोग खड़े हुए हैं जो गाना गाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं।

नीले रंग के पर्दे डले हुए हैं ब्लैक कलर के हैंडल लगे हुए हैं।

अलग-अलग तरह की गिद्ध की फोटो चिपके हुए हैं।

चित्र में एक खेत दिख रहे है।

चित्र में एक फोरूस दिख रहा है।